पिलर्स लगे हैं इसके ऊपर सामने जाल दिख रहा है।

सामने वुडलैंड का शोरूम है।

लेफ्ट साइड में आउटडोर दिख रहे हैं ऐ_सी के।

यहां पे खूब सारी औरतें खड़ी है।

एक बाइक पे दो आदमी जा रहे हैं।